और बहोत ही अच्छा हैं अमजिंग सभी ब्युटीफूल हैं लग रहा हैं बरसात के इलाका का हैं और पेड़ पौधा बहुत ही अमजिंग दिख रहा हैं।

ये बरबट्टी की खेती की हुई है जैसे लग रहा है सांप य है व् है आगे पीछे क्या है यह पता नहीं है लेकिन बहुत ही वृक्ष जैसे दिख रहा है बोले तो बहुत ही अमेजिंग --

बहुत ही खूबसूरत है। नाइस ब्यूटीफुल इसको बोलते हैं सीट वो भी लगा दिया लगा दिया गया लगा दिया गया है।

ऊपर का नजारा बहुत ही ठीक ठाक है पानी वगैरह भी बहुत ही ज्यादा है बहुत ही अच्छा दिखरा है नाइस ब्यूटीफुल

--और आगे पीछे बहुत ही इसको देखने क लिए बहुत दूर दूर से आदमी आये हैं।

इसका जो भाजी है ऊपर वाला हिस्सा बहुत ही अमैजिंग दिख रहा है लगता है ये धो धा के लाये हुए है भाई साहब बहुत ही अच्छा दिख रहा है।

पीछे का भी लुक बहोत ही अमजिंग हैं और और--

पानी बहोत ही बहोत ज्यादा ही ऊपर पर गया है बहोत ही अच्छा है बहोत ही से बहोत ही अच्छा खूबसूरत नाइस सो ब्यूटीफुल बहोत ही अच्छा --